ये एक नदी दिखाई दे रही है नदी की आसपास चारो तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है हरियाली की इस तरह एक झोपड़ा दिखाई दे रहा है।

बड़े मंडप के नीचे सबने अपना-अपना अलग-अलग मंडप सजा कर पूजा करते हुए दिखाई दे रहे है यहा गन्ने फल फूल इत्यादि रखे हुए है।

यहाँ एक स्टेशनरी की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें कि काँच लगे हुए हैं और इसमें नीले कलर का फर्निच हरे --